मुझे इस फोटो में कुछ अलमारी दिखाई दे रही हैं।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

मुझे इस फोटो में एक टेबिल दिखाई दे रही है।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

मुझे इस फोटो में बहोत सारे चट्टाने दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में एक टेबल दिखाइ दे रही है।

मुझे यहां नटराज रेस्टोरेंट का बोर्ड दिखाइ दे रहा है।

मुझे यहां कुछ खिड़कियां दिखाई दे रहे हैं।

मुझे यहां बहुत सारी दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस फोटो में हरदुआ प्लेटफार्म दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो मे कुछ टूटे फूटे फर्नीचर दिखाई दे रहे--

मुझे इस फोटो में एक रोड दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस फोटो में एक दरवाजा दिखाई दे रहा--

मुझे इस फोटो में एक आदमी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में बहोत बड़ा कछुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में हरी भरी बहुत सारी घास दिखाई दे रही--

मुझे इस फोटो में बिजली की तारे दिखाई दे रही है।